स्टेज पर एक ने व्हाइट कलर का--

ये एक बेड रूम है और बेड पे व्हाइट कलर का बिस्तर लगा हुआ है।

और सामने कबर्ड है और दीवार पे स्विच लगा हुआ है और दीवार का कलर वाइट है।

और कुछ लोग खड़े हैं और एक औरत झुकी हुई हैं उसने पीले रंग की--

और इन्होने ब्लैक कलर के ट्राउजर्स और--

और यहाँ पे ए ए ए कुछ खिड़कियाँ हैं वहाँ से धूप अंदर आ रही हैं और वहाँ से ट्रीस नजर आ रहे हैं।

और दीवारों को ग्रीन कलर किया गया हैं।

जिसने ग्रे कलर की बनियान पहनी हुई हैं उसके सिर पे टोपी हैं।

एक गाडी को खोला गया हैं ऊपर लोहे की इ इ अ कुछ अ राड्स हैं।

और यहाँ पे ए ए खिड़कियाँ हैं खिडकियों पे--

कर्टंनस लगाये हुए हैं और एक टेबल हैं उसमे कुछ पेपर्स हैं।

उसने ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ हैं।

ये सडक हैं और ये सड़क पर एक गाड़ी हैं ये नजर आ रही हैं।

एक लडकी पर्पल कलर की टी शर्ट पहने हुए और ब्लैक कलर का--

और सामने ब्यूटीफुल कलर की स्व लॉन्ग स्वेटर पहनी हुई हैं।

एक औरत ने ब्लैक कलर का ट्रैक-सूट पहना हुआ हैं।

और शॉप में कुछ बास्केट्स भी हैं।

और ऊपर भी बहुत सारी लाइटे लगाई गयी हैं।

सामने एक आदमी हैं जो बाइक पे बैठा हुआ हैं और दो बाइके वहाँ पर हैं और एक और आदमी यहाँ हैं।

क कलर रेड हैं और वहाँ पर धूप खिली हुई हैं।

और यहाँ पे एक पेड़ है और सामने कोई डिब्बें हैं जो की रेड कलर के है और वहाँ पे धूप रिफ्लेक्ट हो रही हैं।

गले में ए इसके कुछ लॉकेट हैं और रा--

अ ब्लू कलर की कुर्सियां हैं।